इस तस्वीर में यह दिखाई दे रहा है कि यह किसी कॉलेज की तस्वीर है जो कि कॉलेज की दरवाजे के सामने से खींचा गया है।

इस तस्वीर में यह दिखाई दे रहा है की नदी किनारे बहुत बड़ी मेला लगा हुआ है।

जो की कॉलेज के बगीचो से खीचा गया हैं और इस कॉलेज में कई सारे बच्चे पढ़ने के लिए आये हुए हैं।

इस तस्वीर में यह दिखाया जा रहा है कि यह एक कॉलेज की तस्वीर है जो कि कॉलेज के बगीचे के पास से खींचा गया है।